ऐ नाव टाइप की दिख रही नाव में कुछ फ़ीमेल भी बैठी हुई है वहाँ पर कुछ पानी भी दिख रहा व वहाँ-वहाँ पानी में पानी के ऊपर बहोत सारे पक्षी भी उड़ रहे --